ये एक मार्केट है फिश का मार्केट --

जिसमें बहोत सारे पीसेस दिख रहे हैं।

उसके पीछे पेड़ पौधे हैं और एक इलेक्ट्रिक का टावर भी है।

बहोत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कप्स है।

नजर आ रहा है और बहोत सारे मेनू भी लगे हुए हैं इसमें।

बीच में एक अं झरना भी बह रहा है।

आसमान भी क्लीन क्लियर लग रहा है।

जीप का जो है डिक्की खुला हुआ है सामने से इंजन --

हैं यहां पे बहुत वैरायटी का ज्वेलरी रखा हुआ है जैसे कि नेकलेस सेट्स रिंग्स --